यहाँ सामने की तरफ एक ऑटो खड़ा हुआ है जो कि खाली है उसके साइड में एक ठेला है जिसपे अंडे रखे हुए हैं कुछ और चींज़े लटकी हुई है खाने पीने की।

और उसके साइड में एक और रोड है अ जिसपे ऑटो और बाइक जा रही है| उसके सामने एक खंबा है बिजली का और बिल्डिंग है।

यहाँ सामने नीचे ज़मीन है जिस पर एक तरफ जाने का रास्ता बनाया हुआ है कालीन बिछा है लाल रंग से और साइड में घास है।